इस शॉप को नया नया खोला गया है।

इस फोटो मे हमे एक गाय दिखाई दे रही है।

जिसकी छत पूरी तरह से लाल है।

इस पिक्चर में हमें कई सारी बेड दिखाई दे रहे हैं।

जिन के साथ हमें बॉल भी दिख रही हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा मैदान है।

यह फोटो एक सैलून में लिया गया है।

और अध्यापक उन्हें देख रहे है।

सभी के रेट चार सौ से कम के हैं।

बेकरी का नाम कृष्णा बेकरी है।

बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

बहुत सारे सुंदर प्लांट्स दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में हमें एक रूम दिखाया गया है।

विंडोज़ को पर्दों से ढका हुआ है।

बेड के साथ ही एक सोफा भी है।

इस फोटो में हमें एक कमरे को दिखाया गया है।

कमरे में बहुत सारे टेबल और चेयर्स रखी हुई है।

इस फोटो में हमें बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई गई है।

जहां पर बर्फ पड़ी हुई है।

इस फोटो में हमें कई सारे ऑटो दिख रहे हैं।

यह हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत है।

चारों ओर हरियाली ही हरियाली है।

इस पिक्चर में हमें एक बाइक दिखाई गई है।